इसकी खूबसूरती का वर्णन बहुत ही सुन्दर है।

जो शायद पैसे निकाल के बाहर आ चूका है और वो अपने बैंक का स्टेटमेंट शायद चेक कर रहा है उसने वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का जी --

नेता उन्हें उनकी फोटो लगी हुई है ऊपर पंखा लगा हुआ है और बोर्ड पे बच्चों के लिए कुछ सवाल दिए गए हुए है।

ये एक डेम हैये डेम का किनारा हैअ जिसमे अ आस पास पेड़-पौधे लगे हुए हैडेम के गेट बने हुए है।

ये एक केफे या रेस्टोरेंड हैजंहा पर अ कॉफ़ी एंड जो भी चाहे वो हम ले सकते है ये बहुत सुन्दर लग रहा है इसकी दीवारे --

आस पास बहुत सारी रायडे बनी हुई है अलग अलग कलरफुल चीजे बनी हुई हैये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में।

यह पर्दों के पास जो कलर फुल फुल जोकि येलो वाइट और रेड रोजेज लगाये गए हैग्रीन -ग्रीन --

यहाँ बहुत ज्याद हरियाली है बहुत सारे पेड़ है पेड़ो में से एल पेड़ो की --

इस बोंडरी पे ऑरेंज कलर अरल पोता हुआ है एक मंदिर पे चढ़ने के बाद मंदिर की --